एक गली की तरफ से कुछ बहुत सारी भीड़ आते हुए नज़र आ रही है पीछे की तरफ हमें कुछ मकान कुछ एरिया नज़र आ रहा है जो कि काफी द-दूर दूर तक फैला पड़ा है।

नीचे की तरफ पंखे चल रहै हैं और नीचे कुछ लोग बैठे हुए हैं टेबल कुर्सियो पे अ कु कुछ अख़बार पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं टेब --

वहां पे कुछ मट्टी पे वो खडे हुऐ हैं और वहां पे एक अ लकड़ी का व्हाइट कलर की लकड़ी का एक वो बना रखा है| एक बॉर्डर सा ताकि वो आगे की तरफ ना जा पाए।

जो जिसके बाल कट चुके है उसके इतने बड़े बाल को खड़ा करके रखा हुआ है और उसने टी-शर्ट पहनी हुई है और पीछे की तरफ हमें कुछ और भी लोग नज़र आ रहे हैं।

बड़ा सा एक किसी हॉस्पिटल या फिर किसी चीज का ये रास्ता है अंदर तक काफी जा रहा है बिलकुल सीधा-सीधा। पूरा टाइल ही टाइल बिछे हुए हैं हर जगह यहाँ पे।

और पीछे की तरफ भी हमें बहुत ज़मीन देखने को मिल रही है छोटी सी पतली सी और उसके ठीक ऊपर हम खुला आसमान को देख पा रहे है और इस तरफ कोने में हम ज़मीन का एक टुकड़ा देख पा रहे हैं और जिसपे बहुत सारी घासियां घांसे वगेरा झाडियां उगी --